ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही--

वे रोड भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे और आसमान भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है बॉउन्ड्री भी दिखाई दे रही है।